कतार में टेबल लगाए गए हैं और सभी टेबल पर कुछ गुलदस्ते और टिशू पेपर रखे हुए है।

साइड में पोल भी नजर आ रहे हैं बिल्डिंग का कलर हल्का--

यहां पर छोटे छोटे पौधे पेड़ लगाए गए हैं।

टूर में थोड़ी हरियाली दिखाई पड़ रही है।

पानी में पेड़ की परछाई दिखाई पड़ रही है।

ये किसी दुकान का चित्र है।

सामने एक दरवाजा लगा हुआ है जिसकी कुंडी लगी हुई है।

दीवाल में उजले कलर की पेंट है यहां पर वाशिंग मशीन और कूलर रखे हुए हैं सभी प्लास्टिक में पैक हैं।

कुर्सी पर अगल बगल रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए आदमी बैठे हैं।

ये किसी दुकान का चित्र नजर आ रहा है।

उसके पीछे लड़की की एक तस्वीर है।

ऊपर में बहुत सारी लाइटें लगाई गई है।

दोनों तरफ छोटे से बाउंड्री हैं।

इधर बाउंड्री के किनारे में कतार में बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं और छोटे छोटे घास भी नजर आ रहे हैं।